बीच में लंबे लंबे खंभे हैं इसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ हैं यहां एक पोल भी है और उस पोल के बगल में जंगल भी है।

एक आदमी बाइक साफ कर रहा है एक आदमी खड़ा है यहाँ एक मोटर भी है और यहाँ दो बांस भी हैं और यहाँ पे --

फूल लगाने की जगह है और एक यहां येलो पेन से लिखा हुआ है।

जहां पे तीन आदमी हैं। एक आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा है।

और यहां पे बड़े बड़े डब्बे भी रखे हुए हैं बहोत सारे कपड़े भी रखे हुए हैं।

यहां दो फ्लावर के गमले रखे हुए हैं और एक कल भी है।

और एक औरत जा रही है और--

और एक बाबाजी यहां पे सबको स कुछ समझा रहे हैं।

नीचे की फर्श व्हाइट है वहां पर एक रखा गया है पैर पोछने के लिए।

और यहां पे एक आदमी बाइक से जा रहा है एक आदमी बात करते हुए जा रहा हैं।